काफी बढ़िया व्यू नजर आ रहा है यहां पे।

मंच बना हुआ है यहां पे दुर्गा माता जी जो है बैठी हुई हैं।

पर फिर भी इन्हे देखने लोग आ रहे हैं।

यह एक आइसक्रीम फैक्टरी है जो बहुत खूबसूरत से इसकी डेकोरेशन की गई है।

सफेद और लाल रंग की चेयर है यहां पे अंदर बैठने के लिए और दो दो तीन तीन जो है ए_सी रखे हुए हैं।

यहां पर एक अ जीरो कम से कम पांच साल तक के बच्चों को लिया जाता है।

इसकी डेकोरेशन बहोत अच्छी है ये जो स्कूल है कॉलोनी के बीच में बनाया गया है।

योगा इंस्ट्रक्चर जो हैं योग सिखा रहा हैं।

काफी खुश होकर के जो लड़कियां है वो योगा कर रही हैं।

यहां पर बहोत बड़ा एक हॉल है जिसमें--

और ये रेस्टोरेंट काफी साफ सुथरा लग रहा है।

जहां पे कुछ पौधे जो है वो इंवेंट किए जाते है उनको ज्यादा धूप ना लगे करके नेट से इनकी रक्षा करने के लिए बनाए गए है।

यह एक कपड़ों का शोरूम है जिसको बहोत अच्छे से इन्हें--

शर्ट हैं उनको हैंगर में टांग के रखे है।

थर्ड फ्लोर पे ये जिम खुला हुआ है।

कम से कम हजारों की संख्या में हमें भीड़ दिखाई दे रही हैं ये जो भीड़ है।

और यह काफी बढ़िया सा यहां पे कॉलोनी बनने वाला है।

यहां पे दो लड़के पानी में उतर कर के खेलती ले रहे हैं।

और यहां पे गार्डन जैसा एक मस्त मैदान दिख रहा है।

घास वगैरह यहां पे बहुत कम है और